और कुछ घासभी दिखाई दे रही है छोटे छोटे पेड़ पौंधे दिखाई दे रहे है।

यहा कुछ फाउंटेन दिखाई दे रहे है। झरने दिखाई दे रहे है। एक चबूतरा दिखाई दे रहा है इसके अंदर है। बहुत सार गमले दिखाई दे रहे है। जो की अलग-अलग कलर के है। लाल--

पीछे कुछ टेंट भी दिखाई दे रहा है। एक घर दिखाई दे रहा है। खंभा दिखाई दे रहे है। लाइट भी नजर आ रही है। ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रही है पर इन्होंने अलग अलग कलर के कपड़े पहने है अलग अलग कलर की टोपी पहनी है।

यहाँ एक जंगल सा दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है बड़े छोटे दो हिरण दिखाई दे रहे है।

और नीचे जमीन दिखाई दे रही है जिसपे घास भी लगी हुई है मिट्टी भी दिखाई दे रही है।

क्या दि कलर दिखाई दे रही है एक गाडी अलग रखी है तीन गाडी अलग रखी है एक दीवार दिखाई दे रही है काँच की और सामने भी एक दीवार है।

जो की टीन से बनी हुई है। चारों तरफ बाउन्ड्री दिखाई दे रही है। जो की ईंटोसे बनी हुई है। मैदान दिखाई दे रहा --

यहा अलमारिया दिखाई दे रही है कुछ स्पोर्ट का समान अलमारियों के अंदर रखा है।

यहा एक आदमी दिखाई दे रहा है जो की पर्पल कलर की शर्ट पहने है और उसके पास धारिया है चोकड़ी और नीचे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

पीछे एक गेट भी दिखाई दे रहा है जो की लकड़ी से बना हुआ है और एक खिड़की है वो भी लकड़ी से बना हुआ है साइड मे कुछ अन्य सामान है वो भी लकड़ी से बना हुआ है सब ब्राउन कलर के ब्राउन पीले दिखाई दे रहे है।

यहा पर कुछ आलू दिखाई दे रहे गोल गोल आलू दिखाई दे रहे कुछ बड़े आलू दिखाई दे रहे कुछ छोटे आलू दिखाई दे रहे है।

पेड़ दिखाई दे रहे खंबे दिखाई दे रहे नीचे जमीन दिखाई दे रही है और सड़क दिखाई दे रही है।